फूल है यहाँ ब्रेच टेबुल कुर्सी सब रखाया हुआ है ब्लैक बोर्ड है।

रूम है यहाँ बहुत सारे सामान रखा हुआ है पंखा है बॉल है।

ये खेत है खेत में बहुत सुन्दर-सुन्दर हरे-भरे घांस है गाड़ी चल रही है।

ये झरना है यहाँ पहाड़ है बहुत अच्छे से अच्छा लगता है देखने में ।

बहुत आदमी है | एक घर है ईटा है टेबुल है कुर्सी है |

यहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं | पत्थर आदमी लोग सब हैं | ट्रैन में आदमी सब बैठा हुआ है |

ये बस है यहाँ पे एक घर भी है बहोत बड़ा ये बहोत सुंदर बस है।